विकेट लगा हुआ है और दो खिलाड़ी जो एक कीपिंग कर रहा है एक स्लिप में खड़ा हैं।

और यहां पे कुछ गाड़ियां चल रही है एवं कुछ ऑटो खड़े है एवं एक दो कार भी खड़े हैं।

यह एक डैम है और यहां दिखाई दे रहा है कि यहां पानी का बहाओ बहुत ही तेज है।

पत्थर एक पेड़ नजर आ रहे है एवं हरा भरा मैदान खुला आसमान नज़र आ रहा हैं।

ये कोई औद्योगिक शाला है जिसकी बाहरी तस्वीर है।